यह एक बैल दुकान है यहां से हम --

यहाँ हर टाइप के बुक किताब मिलते हैं ।

यह एक बोर्ड है जिसमे लिखा हुआ रहता है की कहीं हमे जाना है वो कितने किलोमीटर है।

यह एक दुकान है।